एक स्टैचू रखा हुआ है।

तीन आदमी कुर्सी पर बैठा है।

खड़ा होकर नदी को देख रहा है।

जीसमें दरी बिछाया हुआ है।

एक घर है जो की--

यह एक बिस्कुट का दुकान है।

यहां एक बुद्ध भगवान का--